और और भी बहोत सारी तस्वीरे हैं और ये जागरण हो रहा है।

और पानी करने का स्प्रे भी रखा है बहुत सारा सामान नाई का ड्रॉ के अंदर रखा है।

और नीचे हरा मैट और गमले लगे हैं जिनमे छोटे छोटे पेड़ हैं।

जिसके अंदर बहुत सारी लाईटें लगी हैं और गुब्बारे नीले कलर के --

और नीचे एक नदी है जिसमें नांव भी तैर रही है झाड़ियां भी दिखाई दे रही है।

और दरवाजे कांच के शीशे के हैं।

साइड में दो चार गमले रखे जिनमे व्हाइट फूल है।

और एक ओटो भी खड़ा है उसके पास एक लड़की एक ओटो ड्राइवर --